बहुत सारे बुक यहाँ पर रखे है और सामने की तरफ एक ड्रोइंग बुक भी नजर आ रही है।

सामने बहुत बड़ा आइना है और एक लड़की की तस्वीर दीवार पे टंगी है।

एक बुक स्टाल है और एक साइबर कैफ़े लग रहा है ये घर काफी अच्छा है।

मैदान हरी चादर में लिपटी हुई नज़र आती है और आस-पास कुछ ऊंचे-ऊंचे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

ये फोटो किसी आतिशबाजी की है। इस फोटो मे रंग-बिरंगे पटाके आसमान मे जैसे तारे की तरह नजर आ रहे हैं।

ये तस्वीर एक वाटर टैंक की है जो के एक टावर में ऊँची जगह पर स्थित है।

बगीचे की छोटी-छोटी जैसे रास्ते बने हुए है और आस पास बड़े छोटे बोहत किस्म के पेड़ नज़र आ रहे है ।

आसपास बहुत सारे नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं।